और यहां पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और यहां पर सामने एक बोर्ड लगा हुआ है हरे कलर छोटा सा लिखा है वेटिंग एरिया --

इस मकान के अंदर कऊ सारी लकड़ी की बल्ली लगी हुई है।

जिससे कुछ पानी आ रहा है और एक गड्ढे में गिर रहा है।

ये एक टाइल्स की दुकान है।

और यहां पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं जिनमें काफी सारे--

यहां पर एक ओधी बनी हुई है पानी भरने की--

और यहां पर कुछ बच्चे भी हैं।

यह एक रोड चल रहा है यहां पर बहुत सारे टेम्पू पड़े हुए हैं।

सैमसंग जैसी कंपनियों के फोन रखे हुए हैं।

यहां पर छोटी बड़ी सभी टाइल रखी हुई है।

इस पे लिखा हुआ है हर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ।

यहां पर टीन की छत पड़ी हुई है।

यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं और यहां पर सामने कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

और यहां पर एक मरीज भी बैठा हुआ है।

स्विमिंग पूल में रेसिंग कर रहे हैं।

और यहां पर इस स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है।

यहां पर काफी सारे व्यक्ति हैं।

और यहां पर कुछ मेज पड़ी हुई है जिन पर कुछ कागज और सामान रखे हुए हैं।

यहां पर काफी घास फूस है पेड़ है और यहां पर बहुत बड़ा एक खुला मैदान है।

और यहां पर बहुत सारी जनता है और यहां पर कितने ही बच्चे कितने ही बुजुर्ग कितने ही व्यक्ति है।

और यहां पर इन टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है।

और यहां पर एक सड़क जा रही है।

यहां पर बहुत सारा पत्थर है।